यह एक स्विमिंग पूल का फोटो दिखाया गया है और स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग नहाने के लिए जाते है |

और यहाँ पे हर प्रकार के मछली मिलते हैं छोटे --

और जिसे मछुआरे लोग पकड़ने के लिए जा --

इस फोटो में दिखाया गया है की एक आदमी --